यह फोटो सड़क पे की है जहां टेम्पो बाइक्स ढ़ेर सारे वाहन आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जहां पे लोग बांस बल्ली से सपोर्ट देते हुए ढलाई करने हुए मीडियम तैयार कर रहे हैं यहाँ ढेर सारे मजदूर काम कर रहे हैं।

यह फोटो किसी दफ्तर के अंदर का है जहां एक घड़ी लगाई हुई है और ढ़ेर सारे ऑफिसर्स बैठकर काम कर रहे हैं।

यह फोटो एक बस की है जो गवर्नमेंट व्हीकल है। इसके अन्दर बस ड्राइवर और बहुत सारे यात्रीगढ़ बैठे हुए हैं।